एक गाड़ी का हिस्सा भी हमें पिक्चर में दिख रहा है।

हमें बहुत सारे फैन भी दिखाई दे रहे है।

हमें बहुत सारे व्यक्ति भी नज़र आ रहे हैं।

हमें एक टेबल नजर आ रहा है।

यह चित्र में हमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

हमें टेबल और टूल भी दिखाई दे रहा है।

हमें कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं।

हमें बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है।

में कुछ बड़े बड़े पेड़ भी नजर आ रहा है।

हमें कुछ आईने भी दिखाई दे रहे हैं।

लड़की ने लाल रंग का घाघरा जैसा पहना हुआ है।

इस चित्र में हमें कुछ पौधे दिखाई दे रहे है।

कुछ पौधों को काले प्लास्टिक से रैप किया हुआ है।

टेबल के नीचे हमें जूते दिख रहे हैं।

हमें बहोत सारे लोग नजर आ रहे है।

कुछ घर जैसे स्ट्रक्चर भी हमें दिख रहे हैं।

एक ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर भी हमें दिख रहा है।

हमें सीलिंग में छोटे छोटे लाइट भी दिख रहे हैं।

हमें कुछ चेयर भी दिखाई दे रहे है।

पेड़ के पास हमें टेबल जैसे भी दिख रहे है।

हमें एक दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

एक लाइट भी हम देख पा रहे हैं।

इस चित्र में हमें आकाश दिखाई दे रहा है।

टेबल का रंग नीला जैसा है।

चेयर और सोफे के रंग काले हैं।

हमें कुछ घर भी नजर आ रहे हैं।

हमे कुछ पेड़ पौधे भी नजर आ रहे है।

ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ हमें दिखाई दे रहे है।

एक रस्ता दिख रहा है जिसमें टाइल्स लगा हुआ है।

बिल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है।

हमें कुछ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

हमें कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

हमें रूम के अंदर एक टी_वी जैसा दिखाई दे रहा है।

हमें तीन साइन बोर्ड भी दिखाई दे रहे है।

इस चित्र में हमें एक रास्ता दिखाई दे रहा है।

में पानी भी नजर आ रहा है।

हमें कुछ मोटरसाइकल और स्कूटी भी नजर आ रहे हैं।

एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

खिड़कियों में ग्लास लगा हुआ है।

रस्ते के दूर में अनगिनत गाड़ियां हैं।

हमें रस्ते के पार कुछ इमारतें दिख रहे हैं।

पेट्रोल पंप के रूफ में आसाम ऑयल लिखा हुआ है।

पेट्रोल पंप के अंदर कुछ लोग हैं।

हमें कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रहे है।